में बहोत सारा हमें पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है। ग्रीन डी लगी हुई दिखाई दे रही है। दृश्य देखने बहुत सुन्दर--

बड़े से रेस्टोरेंट की फोटो है बहुत महंगे रेस्टोरेंट की फोटो है क्योंकि इसमें चेयर ही इतनी बड़ी बड़ी दिख रही हैं बहुत बड़ी टेबल रखी हुई दिख रही है और टेबल पे हमें कांच के गिलास दिखाई दे रहे हैं।

और हमें आसपास बहोत सारी भीड़भाड़ दिख रही बहोत सारे आदमी दिख रहे हैं ये कोई बाजार है जिसमें आदमी सामान खरीदने के लिए आए--

कुर्सियाँ रखी हुईं दिख रही हैं जो की ब्लू कलर की हैं और बहोत सारी कुर्सियाँ रखी हुई हैं और बीच में सभी पुरुषों के टेबल रखी हुई दिखाई दे रही है दूर हमें --

सामने एक बाइक खड़ी हुई दिख रही है एक स्कूटी खडी दिख रही है एक रेड कलर की कार खड़ी हुई दिखाई दे रही तीन चार आदमी हमें यहां--

बहोत सारे हमें बलून यहां पर दिखाई दे रहे हैं जो की रेड कलर ग्रीन कलर और व्हाइट कलर के देख रहे हैं एक आदमी हाथ माइक पकड़े हुए हैं वो है मा--

जंगल दिखाई दे रहा हैं जंगल में हैं बहोत सारे हिरण दिखाई दे र--

हिरन हैं कुछ हिरन खाते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ हिरन घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं।

किसी भी बैंक खाते में आधार कार्ड जमा होने पर लेनदेन कर सकते हैं ऐसा यहां पर ये बहोत बड़ा पोस्टर में लिखा हुआ कुछ कुछ दिखाई दे रहा है।

ये महावीर स्वामी की मूर्ति है जो की ब्लैक कलर की है और ये गोला कलर के कपड़े पहने--

दो तीन खानों में कुछ रखा हुआ दिखाई दे रहा है बाकी के खाली दिख रहें हैं बहोत सारे हमें यहां पे पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं सामने और एक साइड हमें--

यहां पर बहुत सारे लड़का लड़की और बहुत आदमी यहां पर खड़े हुए दिख रहे हैं कुछ और--

जीन्स और टॉप पहने हुए हमें दिखाई दे रहा है पिछे भी हमें और दो आदमी भी दिख रही हैं।

यहां पर हमें तीन चार पिलो दिखाई दे रहे हैं जो की ब्लू कलर के हैं एक सोफा देख रहा है सामने एक दीवाल दिख रही है व्हाइट कलर की जिस पर बहोत सुंदर पत्तियों से डिजाइन बनी हुई दिखाई दे--

फलों की दुकान है ये यहां पर बहोत सारे फल रखे हुए हैं मांगो दिखाई दे रहे हैं एप्पल दिखाई दे रहे है सीताफल दिखाई दे रहे हैं।